एक येलो कलर का गमला--

चेयर्स पर नंबर भी लिखे हुए है।

इसमें काफी लोग इकट्ठे योगा कर रहे हैं।

सेल करने के लिए खड़ी की गई है।

इसमें काफी बड़ी बड़ी मशीनस् पड़ी हैं।

सामने पोस्टर बने हुए हैं जिसमें बॉडी बि--

पहन कर केबिन के पास खड़ा है।

काफी सारे बच्चों के लिए टॉयज पड़े हैं।

ये स्कूल की तस्वीर है।

दो आदमियों के साथ एक लड़की--

ये पार्क की तस्वीर है।